और बहुत सारे जगह पेड़-पौधे आदमी-उदामि बहुत--

और पीछे भंडार भी टंगा हुआ है। बोहोत सारे

पीछे फिल्ड भी बोहोत सारे जंगल-उंगल है बोहोत सारे पेड़-पौधे ताड के बोहोत सारे पेड़ --